खूब सारी भगवानों की अलग अलग झांकियां लगी हुई है।

जिम में मशीनरीस लगी हुई है।

ये ब्राउन कलर का कबर्ड दिख रहा है।

कबोर्ड के साइड में दो बिसलेरी की बॉटल और टी मेकर का जग रखा हुआ है।

पोर्ट्स मे काफी सारे लोग बैठे हुए है।

स्टेशन का एरिया दिख रहा है।

गमछा पहने हुए कुछ कर रहा है।

साइड में एक कांच की विंडो पड़ी है।

मछली वाले बैठे हुए कुछ लोगों के यहां ग्राहक मछली ले रहे हैं।

स्टेज के ऊपर एक सोफा रखा है।

सामने एक चक्री लगी हुई है।

जिसमें बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे रोड पे एक रैली निकली हुई है।

और लड़कियों ने ब्लू कलर के कुर्ते पहने हुए--

और जिम में बड़े-बड़े पोस्टरस लगे हुए हैं।

वहीं एक टीचर खड़ा हो के बच्चों को पढ़ा रहा है।

टुम प्लाजा के केबिन के पास एक वाइट कलर की कार खड़ी है।

रूम में पीछे वॉलपेपर लगाया गया।

जहाँ पे बहोत बड़े बड़े टॉवर्स लगे हुए हैं।

बस स्टैंड पर दो बस खड़ी हुई है।

बस स्टैंड के आसपास दुकानें दिख रही--

जिसमे माता दिखाई दे रही है।

साइड मे मेनू कार्ड लगा हुआ है साउथ इंडियन --